एक डेकोरेसेटिव आ-बैकग्राउंड देखने को हमें मिल रहा है जोकि बना हुआ है कपड़ों से फूलों से रंग बिरंगै और बहुत ही प्यारा डिजाइन हमे देखने को मिल रहा है।

है जो काम के ऊपर बैठा हुआ तो हम साथ में पहुंॅच।

हमें एक ब्रिज जैसा कुछ देखने को मिल रहा है रास्ता जो कि सामने की ओर आ रहा है और उस ब्रिज पर एक बाइक वाला है।

साइड में तराजू भी रखा हैं एक बोरी भी रखी हैं कुछ लोग वहाँ पर मछलियाँ खरीदने के खरीदने के लिए और देखते हुए आ रहे हैं।

सामने की भी हमारे सामने की तरफ कुछ लोग कुर्सियों पर बैठे हुए है जो कि अपनी फो-फो अपने फोन से उन लोगों की वीडियोस बना रहे है पीछे का व्यू बहुत बैकग्राउंड अच्छा--

अ-अ उन्होंने कोट पहना हुआ है कुछ बच्चों ने एक बच्चे ने आ रेड कलर का फ्रॉक जैसा कुछ पेहना है साइड में उसके कुछ सैंटा क्लोस जैसा कुछ पुतला खड़ा है।

एक आदमी देखने को मिल रहा हैं जिसका बैकसाइड हमे दिखाई दे रहा हैं उसने शर्ट और पैंट पहना हुआ हैं सर पर लगा रखी हैं टोपी और हमें उस पर कुछ लोहे का कुछ चीज हमें देखने को मिल रहा हैं जिसकी नीचे की तरफ वह देखने की कोशिश कर रहा हैं वहाँ पर लोहे की काफी सारे सामान हैं।